सब पढ़त है सरस्वती माई के फोटो लागल है सब अपने मने-मने बैठ के पड़त है लिखपर है अच्छा लगे पूरा हो।

याहू कोई गुफानि याहू कोई गुफा नि लग । हर बहुत दिन से कुछ घास पूस लगल है एकरा में लिखले अंग कुछ करके लिखले --

उम पीछे काछ है गार्डन है पूरा मट्टी है कितना अच्छा लग देखने मे बहुत सुंदर लग रहा है अच्छा-अच्छा फूल।

लाल रंग का श्रींगार है एलआईसी के कार्यालय है जमीन के है पीछे अभी बिल्डिंग बनआये है आगे सिटर है चरल है अच्छा लगत रहा देखे।

भारत सरकार संचार एवं सूचना प्रोद्योगी मंत्रालय सूचना प्रद्योगी विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन एन _आई _सी जिला एकक जमुई--